और इसको घेरा गया है नीले कलर से पेंट हुआ है और बॉडर रेड कलर से पेंट हुआ है।

हमे यहां पे बहुत सारी ब्लैक कलर की चेयर्स राखी हुई हैं दो तीन लाइन मे और कांच का दरवाजा भी लगा हुआ है।